बचाना बना है बहुत सारी बोट है नदी है।

लोगों ने मास्क पहने है टेबल पर पिली फाइल रखी है।

एक आदमी मशीन का वायर काट रहा है।

लोग सर पर इँटे लेकर जा रहे है।

लाइट के खंबे है पीछे बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन का काम है।

बैठने का बेंच है पेडपौधे है एक औरत झाड़ू लगा रही है कचरा है।

कमरा है कमरे मे मोटे खंबे के उपर कार रखी हुई है कार ऊँचाई पर है।

सीढी के दोन्हों बाजु मे सफ़ेद कडपे पहन कर लाइन से लोग खड़े है।

कमरा है कमरे में कुर्सी लगी हुई है एक आदमी चाय पी रहा है ।

गार्डन है गार्डन मै पेड़ पौधे है पेड़ों की लाइन बनी हुई है।